ये एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

अंगूर भी हैं काफी फल हैं।

गाड़ी यहां पे रिपेयरिंग की जाती हैं।

खाने के बर्तन भी रखे हैं।

यहां पर एक खंभा भी है।

शायद ये हिरण शेर का चित्र है।

यहां पर काफी लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ पे बाइक भी खड़ी हैं।

यहां पर बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

यहां पास कार भी खड़ी है।

तरह तरह के फूल लगाए जाते हैं।

है जोकि टोपी लगाए हैं।

और सफेद कपड़े पहने हुए हैं।

ये काफी काम आता है ये गड्ढा खोदता--

यहां पास एक लेडिस खड़ी हुई है।

ऊपर भीं घर बना हुआ हैं।

पाइप से पानी के फुव्वारे मार रहा है।

यहां पे पेड़ भी लगे है।

ये एक पार्क है जहां पर--

बच्चों के खेलने के लिए ट्रेन का--

जो कि डबल फ्लोर है यहां पे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है।